एक बड़ा सा मैदान दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे एक लाइन बनकर खड़े हुए हैं।

जिन्होंने सफेद रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और पीछे एक बस खड़ी है जो सफेद रंग की है और एक वैन खड़ी है।

हमे एक रोड दिखाई दे रही है रोड पर कुछ फोर व्हीलर्स है एक के पीछे एक खड़ी हुई है साइड मे एक ऑरेंज कलर की ब्रश खड़ी है जिसके ऊपर कृतिका लिखा हुआ है सामने दो साइकिले खड़ी है।

इसमें कई सारे फूलों के पेड़ लगाए गए हैं सर्कल पर एक लड़की बैठी हुई है जिसने अपना चेहरा कवर किया हुआ है।

रोड पर जाते हुए हमे दो आदमी दिखाई दे रहे है जिसने एक ने नीले रंग की टी-शर्ट पहनी है एक ने लाल रंग की।

यहां पर हमे कुछ कमरे दिखाई दे रहे है और इस कमरों के बाहर एंट्री गेट पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर सहरसा लिखा हुआ है और गेट पर नीले रंग से पेंट करके कुछ पट्टिया बनाई गई है।

और बाहर कि तरफ कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहें हैं और लगी हुई एक रोड दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत बड़ा सा गेट बनाया गया है जो की काले रंग से पेंट किया गया है गेट के ऊपर सर्व नाम सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा लिखा हुआ है।

एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल पर एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं हॉल के पीछे की दीवार पर कुछ पेंटिंग्स की गई है।

एक बहुत बड़ा सा एंट्री गेट दिख रहा है जिसके ऊपर सदर अस्पताल सहरसा लिखा हुआ है।

और सामने की तरफ एक इस स्टेज बनाया गया है जिसे लाल और सफेद रंग के फूलों से सजाया गया है और छत पर बोहोत सारी लाइटे